सामने एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें काफी सारे तार बैटरी लगायी गयी है और वह उसके पीछे खेत है।

सामने एक दुकान है दुकान में काफी सारे कप्स बेचे जा रहे हैं और गमले भी।

ये एक आंगनबाड़ी है जहां पे छोटे-छोटे बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे है जिनमें कुछ लड़के और लड़कियाँ भी है।

और काफी सारे आदमी वहाँ पे है और एक और लड़की जा रही है जो कि बैग टांगी हुई है।

तीन-चार आदमी बैठ के मछली काट रहे है और एक आदमी बेच रहा है और काफी सरे लोग भी है वहां पे खड़े दा --

सामने खेत है खेत में एक आदमी है जो की छोटे --